इस कार्यालय के बाहर एक बहुत बड़ी खाली जगह है। और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।

और यहाँ एक आदमी इन मालाऔ को बेच रहा है ये सब फूल की माला दिखने में बहुत सुन्दर लग रही हैं ।

और यहाँ दिन में बहुत सारे लोग घुमने के लिए आते हैं जो की ये कुर्सियों पर बैठते हैं यहाँ बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।